नाव जो है ब्राउन कलर का है।

सामने एक तस्वीर में दिखाया गया है कि एक रूम है।

बोर्ड दिखाई दे रहा है और एक खिड़की दिखाई दे रहा है दो।

बहुत सारे उसके आगे टेंट भी लगा हुआ है जो गुलाबी कलर और लाल कलर से रंगा हुआ है।

और हॉल में बहुत सारे सामान रखे गए --

हमने एक तस्वीर में दिखाया गया है कि दो बाइक खड़े हैं और एक बाइक में एक हेलमेट लगाया गया है।

सीढ़ी दिखाई दे रहा है और दिखाई दे रहा लाइन का--

पीछे खिड़की दिखाई दे रहा है जो खिड़की में लोहे लगाया गया है।

तस्वीर मे दिखाया गया है कि चर्च का सिंबोल बनाया गया--

घास जमे हुए हैं जो छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं।

बगल में बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं जो गुलाबी कलर का फूल है।

बगल में एक और स्टेज पे सोफा भी लगाया है।

एक बोर्ड भी दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है और वायरिंग भी किया हुआ है।

बाइक पर कुछ आदमी बैठे हुए भी है और एक खड़ा है बाइक के पास और कुछ ऑटो दिखाई दे रहा है टेंपो --

तीन बच्चे और एक औरत दिखाई दे रही है।

पीछे कुछ दुकान दिखाई दे रहे है जिसका शटर बंद हैं।

डेकोर के नीचे सजाया गया है जो गेंदे का फूल से ऑरेंज कलर से सजाया गया है।

जैसे कि महिंद्रा का कार दिखाई दे रहा है बोलेरो दिखाई दे रहा है।

कुछ काले हैं और कुछ व्हाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं।

पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहा है पेड़ जो हरा कलर का है।

दिखाई दे रहा है पत्थल जो है ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा--

इस पर कुछ जमे घास दिखाई दे रहे हैं।

तरह तरह के फूल एक लकड़ी का कवर्ड बनाया गया है।

वॉल में एक पोस्टर है भगवान जी का।

तस्वीर में बहुत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं चलते हुए और कुछ बैठे हुए भी हैं।

तस्वीर में एक लड़का दिखाई दे रहा--

पाइप का कलर जो है काला कलर है नीचे कीचड़ भी दिखाई दे रहा है।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

तस्वीर में दो झूला दिखाई दे रहा है जो एक गुलाबी कलर का है एक ऑरेंज कलर का है।

सामने एक तस्वीर में बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ए_टी_एम मशीन है आ वहां पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक तस्वीर में दिखाया गया है कि बहुत सारे बाल्टी है टब है।

जैसे की बाल्टी है वह नीला कलर का है टब है जो ग्रीन कलर ऑरेंज कलर लाल कलर --